यह किसी माल की फोटो दिखाई गई है।

और साइडों में पत्थरों की डेकोरेशन भी--

और इसमें मेन फोटो एक फूलों की माला बनी दिखाई दे रही है।

किसी जगह का गेट नजर आ रहा है।

यहां एक एच_पी के पेट्रोल पंप की फोटो दिखाई गयीं है।

फोटो दिख रही है जिसमें बहो--

बोञ्च बनाए हुए हैं और बीच बीच में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।